टीचर्स पीछे बैठी हुई है। स्कूल में डेस्क और बेंच है।

घर के आगे एक रोड दिख रहा हैं दोनों तरफ पेड़ हैं और एक नेहर जैसा दिख रहा हैं।

मैदान में काले रंग का रबर की टाइल्स लगी हुई है और चारों ओर घास है। मैदान के पीछे एक सफेद रंग का दीवार है।

यह कैफे भूरे रंग की दीवार और हरे रंग के साइन बोर्ड से सजाया हुआ हैं।

मंदिर का कलर व्हाइट है मंदिर के दीवार पे अलग अलग डिजाइन की गई है माता का डिजाइन कियल किया है दीवारों पर काई लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक जिम का उपकरण दिखाई दे रहा है।

चित्र में अलग उपकरण भी देखने को मिल रहा है उपकरण एक लकड़ी के फर्श पर रखा हुआ है पीछे के दीवार पर पत्थर का बनावट है।

दो बेसीन दिख रहा है हाथ धोने के लिए बहोत सारे लाइट लगे हैं रेस्टोरेंट के अंदर पंखे लगे हुए हैं।

नीचे छोटे छोटे पत्थर दिखाई देखने को मिल रहे हैं एक बाल्टी दिख रहा है सफेद रंग का है वो --

टेबल पे कैंची है बुक्स है और कैमरा भी है ऊपर फैन है।

वहां दो अंकल बैठे हैं और बहुत सारी बुक यहां पर अलग अलग कलर के हैं।

साइन बोर्ड पर एक शेफ की टोपी का डिजाइन भी है।

इस चित्र में हमें एस_बी_आई बैंक का शाखा देखने को मिल रहा है।

कुछ लोग इमरात के अंदर बैठे और खड़े हुए हैं।

और एक व्हीलचेयर देखने को मिल रहा है फर्श का कलर व्हाइट है केक के पीछे हमे एक फ्रिज देखने को मिल रहा है जिसका कलर व्हाइट है।

रथ के आजू बाजू बहोत सारे लोग हैं एक दो बंगला देखने को मिल रहा है।

इस चित्र में हमें एक तीन मंजिला का घर दिख रहा है।

छत के ऊपर रेलिंग लगा हुआ है आगे एक छोटा सा ग्राउंड देखने को मिल रहा है आजू बाजू पेड़ दिख रहे हैं घर के आगे एक कटा हुआ पेड़ नजर आ रहा है।

और दूसरी तरफ कुछ हरे शंकु रखे गए हैं मैदान के चारो ओर पेड़ है।

इसके सुन्ड पर आदमी बैठा हुआ है आदमी ने शर्ट पैंट और जूता पहना हुआ है।

वह आदमी मशीन को देख रहा है एक आदमी मशीन में काम कर रहा है।